खेत दिखाई दे रहा है खेत में गिट्टिया पड़ी हुई है दूर-दूर को पेड़ न नज़र आ रहै हैं।

लाल कलर की जो दीवार दिखाई दे रही है इस पर लोहै का टीन दिखाई दे रहा है।

औरतें भी दिखाई दे रही है दूर गो घर दिखाई दे रहै है लोगों में टीवी लगे हुए है।

फूल लगे हुए हैं हरी पत्तियां लगी हुई है एक आदमी स्टेज पे बैठा है।

माइक है माइक हाथ में कागज है।

अम्म घर दिखाई दे रहा है रोड में पानी भरा हुआ है बस पानी बस की टायर पानी में है बस --

और दूर की पटरी दूर तक दिखाई दे रही है।

और काली कलर की खंबे दिखाई दे रहै हैं।